यहाँ एक मैदान दिखाई दे रहा हैं जिसमे कैंप नज़र आ रहा हैं कैंप का रंग पीला नज़र आ रहा हैं।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग सफ़ेद नज़र आ रहा है पानी का रंग सफ़ेद है बोट का रंग ग्रे कलर का नज़र आ रहा है।

पीला और सफ़ेद दिखाई दे रहा हैं यहाँ ज़मीन नज़र आ रही हैं ज़मीन का रंग भूरा दिखाई दे रहा हैं यहाँ एक--